और ये ओवरब्रिज है उसपे काफी लोग खड़े हुए हैं अगल-बगल पेड़-पौधे हैं हरी पत्तियाँ हैं बादल हल्के काले सफेद हैं।

एक रास्ता है जो आने-जाने का और कोई गाड़ी आ रहा है जा रहा है साइकिलिंग चला रहे हैं मोरसाले आ रहे हैं।

बगल से एक पेड़-पौधा है ब-गेट लगा हुआ है बादल नीले --

अगल बगल पेड़ पौधे हैं | जो हरा पत्तियाँ है बादल सफेद और हलके काले हैं।

जिसमें कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं और अगल-बगल दुकाने हैं ठेले हैं मकाने बनी हुई हैं और पेड़-पौधे है हरा है बादल काले हैं।